इसमें एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं आस पास बहुत सारे पेड़ हैं घास है बिच में एक पार्क दिख रहा है जिसमें बनना ट्रीज हैं ।

जिम में मिर्रोर बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है बाहर का और ग्रीन पेड़ दिख रहे है और एक गर्ल खड़ी है जो लाईट टी-शर्ट पहन